यहाँ पे एक दो तीन चार पांच पांच गमलाए है एक ब्लू कलर हैं एक स्लेटी कलर है एक रेड कलर है एक ग्रीन है।

बादल भी छा रहे हैं घटाए भी छा रही हैं पानी भरा हुआ हैं और बहुत सारी पिचकारी निकल रही हैं।

यहाँ पे एक आम का पेड़ है एक सड़क जा रही है दो अल्टो रखी हुई है।

यहां पर सूरज डूब रहा है यह बहुत बड़ी सिटी है बहुत सारे घर है यहां पे पर्पल कलर का ब्लू कलर ऑरेंज बहुत सारे कलर पुते हुए है।

यहाँ पर एक दुकान है उसमे बहुत सारी चीज पाउडर है इसमे खाने की चीज़ है बच्चों की बॉडी लोशन है डार्क